सबसे मेन मुद्दा यह है की यहाँ पर बच्चे आकर के एक अच्छा अच्छा स्टूडेंट अच्छा बेटा अच्छा नागरिक बनते है।

बहुत ही अच्छा- सा माना जायेगा क्यूँकि इस फूल के कारण ही हमलोग सुगन्धित हो पाते हैं।

यह बाल को कटिंग इसलिए करवा रहा है ताकि ये बहुत ही अच्छा दिख सके बहुत ही खूबसूरत दिख सके और स्टाइल मार सके।

सा लग रहा है क्यूंकि यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है।